ऊपर में बल्ब लगा हुआ है एक टेबल रखा हुआ है।

इसके ऊपर में लिखा हुआ भारत मोटर्स पैटर्न सर्विसेज ऑनलाइन --

कुछ लोग अपने हाथ में पेन पकड़े हुए है कुछ लोग का कॉपी बुक्स बंद है।

यहां पे पेड़ पौधे हैं और बहुत हरा भरा घास नजर आ रहा है।

और यहां पे खेती हुई है धान भी नजर आ रहे हैं हरे हरे।

और कुछ बिस्किट्स नजर आ रही है और यहां पे अलग अलग तरीके के मिठाइयां है जो--

और यहां पे काफी लोग हैं जो कि खड़े होके इस फील्ड के गोले में देख रहे हैं

जिन्होंने एक ड्रेस पहना हुआ है फुटबॉल टीम का--

यहां पे एक महिला है जो कि टेबल से दूसरी साइड खड़ी हुई है।

यहां पर बहुत सारी पेड़े नजर आ रही हैं पौधे नजर आ रहे हैं।

और यहां पे एक ए_सी लगाया हुआ भी दिखाई दे रहा है बाहर से।

जो कि कुछ अ कर रहे हैं और कुछ लोग हैं जो कि नीचे भी उतर रहे है इस जंगल से।

और अपने हाथ में कैंडल्स ली हुई है कुछ महिलाएं जो है अपने मुंह पे मास्क लगाई हुई है।

और यहां पे बहोत ही सुंदर सा रंगोली बनाया गया है राम भगवान जी का और सीता मां का।

और यहां पे उनके बगल में दिये जलाये जा रहे है।

कुछ डब्बे का रंग है जो की चेंज है कुछ डब्बे ऑरेंज कलर की भी है कुछ रेड कलर के --

और यहां पे एक म्युचुअल फंड का ऑफिस भी नजर आ रहा है जिसके गेट शीशे के है।

या आंखों में मेकअप करता हुआ दिखाया गया है।

उसके पैर में भी कुछ दिखाया गया है मेहंदी का दृश्य दिखाया गया है।

और सामने में एक बड़ा सा बिल्डिंग जैसा नजर आ रहा है।

यह एक नदी का दृश्य है जिसमें एक ओवर ब्रिज ऊपर में दिखाई दे रहा है।

इस दृश्य में हमें फूलों से बनी हुई एक झालर की जैसा दिखाई दे रहा है जो की काफी लंबा है ऊपर से लेके नीचे तक लटकाया गया है।

अलग अलग तरीके के फूल इसमें लगाए गए हैं कुछ गुलाब के फूल भी है।

और यहां पे एक आदमी है जो कि अपनी टी शर्ट को ऊपर किए हुए हैं।

यहां पे ऑरेंज व्हाइट और ग्रीन कलर का पेंट किया गया है हल्का।

इस मंदिर के सीढ़ी को भी अलग अलग तरीके से पेंट किया गया है।

एक घड़ी दिखाई दे रहा है रबर दिखाई दे रहा है।

ऊपर में कुछ टैडी बियर लगाई गई है।

इस मंदिर को अ काफी काली काली सी छाएं आ गई हैं।

बहुत सारा घास दिखाई दे रहा है हरा हरा घास है।

बैठी हुई बकरी उजली ल उजली और काले कलर की है।

यहाँ पे एक रेड कलर का टेंपू जैसा दिखाई दे रहा है।